यहां पे कुछ गाड़ियां लगा हुआ है सामने की तरफ एक दुकान भी है इधर कुछ आदमी जो सवारी कर रहे हैं।

यहां पे एक स्कूल का प्रोग्राम हो रहा है सामने की तरफ एक ए_सी लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे लोग हैं उधर एक जेंट्स खड़ा है यहां पे एक लेडिस खड़ी है जो व्हाइट रंग का पहनी हुई है।

यहां पे बहुत ही बड़ा नदी है जिसके ऊपर एक पानी सप्लाई का टंकी लगा हुआ है।

सभी पेंट किया हुआ है इधर खेत बड़ी है बीच में एक बहुत ही बड़ा पत्थर पत्थर रखा हुआ है।

सामने के तरफ एक दरवाजा भी है एक पंखा है जो उधर हवा दे रहा है।

यहां पे फुलझड़ियां जला रहे हैं बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है।

इस चित्र में दिखाया गया है के यहां पे बहुत ही बड़ा पहाड़ है जिसके नीचे एक रस्ता गया हुआ है।

ये शहर का फोटो है यह बाजार लगा हुआ है एक आदमी फल बेच रहा है।

लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ है उधर एक आदमी पिंक ड्रेस पहन कर ऊपर टोपी पहन कर जा रहा है सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

दूर दूर पर बहुत ही बड़ा बड़ा पहाड़ दिख रहा है इधर एक सूखा सा पेड़ है।

इसमें बहुत सारा पानी भी जंबा हुआ है। बहुत ही हरियाली-हरियाली दिख रहा है बहुत ही सुंदर जगह है।

कुछ लोग व्हाइट ड्रेस पेहने हैं कुछ लोग पीला ड्रेस पेहने हैं रेड ड्रेस पेहने हैं सामने घर है।

नीचे टपर बिछाया हुआ है इधर गोले गोले घेरा मारा हुआ है सभी लोग एक हाथ आगे एक हाथ पीछे की करे हुए हैं।

ऊपर में कुछ लिखा हुआ है सामने न्यू दुकान खुला है लड़की के हाथ में एक मोबाइल भी है।

इस चित्र में ये दिखाया गया हैं यहां पे बहुत सारे लोग है जिसमे दो टेंपू दिख रहे है एक कूड़ेदान वाला दिख रहा हैं।

पर मे रेड रंग से पेंट हुए हैं छोट कुर्सी भी हैं जो टेबल के पीछे पीछे लगाया हूं यहां पे बहुत सारा फूल रखे हुए हैं।